कुछ मेले में बेचने वाले सामान हैं टेंट है सामने स्टेज है जहां डांस म्यूजिक चल रहा है।

हुम् ब्लू कलर के पर्दे है कांच की खिड़कियां है बस मे एक भी व्यक्ति नहीं --

ये किसी शोरूम के बाहर का फोटो है।

यहां बहुत सी परफ्यूम रखे हुए हैं।

कुछ पौधे लगे हुए हैं और कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

ये एलएन सिटी कॉलेज का फोटो है।

वाइट कलर की पुती हुई हैं गार्डन में पेड़ हैं पौधे हैं ग्रीन कलर की ग्रास है।

ये बच्चों के खेल खिलौने की शॉप है।

यहां आसमान खुला हुआ है।

सामने एक शोरूम है जो वाइट कलर का है।

वह नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है।

इस घर में दो तरफ से जीने हैं।

यह पार्क है पार्क में झूले लगे हुए हैं।

और पानी में कोई भी गंदगी नजर नहीं आ रही है।